इस चित्र में मुझे एक सड़क दिखाई दे रही है जिसके किनारे पे--

इस चित्र में मुझे एक कार दिखाई दे रही है।

इस चित्र में मुझे एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिसके नीचे ए_टी_एम है।

काफी ज्यादा बुके रखी हुई हैं।

इस चित्र में मुझे एक पूल गेम दिखाई दे रहा है जो कि लोग खेल रहे हैं।

इस चित्र में मुझे एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिसके ऊपर पैराडिस लिखा हुआ है बिल्डिंग लाइटों से सजी हुई है।

एक पेड़ा दिखाई दे रहा है।

इस चित्र में मुझे एक घर दिखाई दे रहा है जो कि सफेद रंग का पुता हुआ है।

इस चित्र में मुझे एक बस दिखाई दे रही है।

इस चित्र में मुझे एक पेट्रोल टैंक दिखाई दे रहा है जिसके बाहर एक खुली जीप --

एक पेड़ा लगा हुआ है।

इस चित्र में मुझे एक एयरपोर्ट दिखाई दे रहा है जिस पे राजा भोज एयरपोर्ट भोपाल लिखा हुआ है।

बैठे हुए हैं और काफी सारी किताबें रखी हुई हैं।

इस चित्र में मुझे एक कमरा दिखाई दे रहा है जिसके अंदर कुर्सियां और टेबल रखी हुई है।

इस चित्र में मुझे एक स्विमिंग पूल दिखाई दे रहा है जिसके अंदर लोग स्विमिंग कर रहे हैं।

इस चित्र में मुझे एक सर्विस सेंटर दिखाई दे रहा है।